जिसके अंदर की मतलब एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

एक मैरिज गार्डन का वो दिखाई दे रहा है व्यू दिखाई दे रहा है जिसमें की पूरा खुला मैदान दिखाई दे रहा है सामने --

यह एक रेस्टोरेंट का फोटो है जिसके अंदर सजावट की गई है गुब्बारों से सजावट की गई है बैठने की व्यवस्था दिखाई गई है।